एक गाड़ी है जो बहुत ही खूबसूरत सजी हुई है येलो पिंक रेड फूलों से ब्लू फूलों से और इसके गेट --

यहाँ एक दुकान टाइप की बन रही है दूकान या फिर ऐसा कुछ साफ घर टाइप का बन रहा है गेट टाइप का स्कोर टाइप का जिसमें अंकल कुछ कर हॉल बना रहे है हॉल मशीन से हॉल मशीन से हॉल बना रहे है और वो वाइट कलर की शर्ट ब्लू पेंट पेहने है।

लाईनो में लगे हैं और कुछ लोग बिना लाईन के इधर उधर खड़े हुए हैं मोबाइल चला रहे है और और वाईट कलर की ब-बना है ये।

फिर वो स्टार्स है यहाँ पर लाइटिंग वगैरा है बहुत जायदा ए_सी लगा है व्हाइट कलर का फेन लगा है यहाँ बहुत सारी बोतल वगैरा रखी हुई है वो मिरर लगा है और तीन चार लोग खड़े है यहाँ पर--